फ़ोन है दिवाल है बिजली का एगो अथी बोर्ड दिखा है मीटर --

एक पीछे में जनरेटर है बड़ा-सा।

ये किसी जंगल का जंगल का ये पार्क लग रहा है। अन्दर चिड़िया घर का --